यह एक शहर का नजारा है जिसमें आतिशबाजियाँ हो रही हैं। आतिशबाजियाँ काफी अच्छी लग रही हैं और आस पास काफी लाइट भी है।

यह एक खेत है जिसमें जगह-जगह ढेली लगी हुई है। वो ढेली देखकर लगता है ये खाद है।

किसी फैक्ट्री का सीन है जो कि पूरी लोहे की बनी हुई है। इसके ऊपर एक चिमनी भी दिखाई दे रही है और तथा इसके पास एक सीढी सामने दिखाई दे रही है।

पेड़ भी लगे हुए है। ऊपर की तरफ तीन टंकी रखी है जो कि जाली से ढंकी हुई हैं। यह एक गेट भी लगा हुआ है। ब्लैक कलर का जिसमे काले कलर का जो की लोहे का है।